कुर्सियाँ फार्म की लगी हैं।

मैदान के अंदर बहुत सारे लोग खड़े हैं।

आस-पास कुछ लोग घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ व्यक्ति सामने की तरफ खड़े हुए हैं।

इस पिक्चर में एक नेचुरल टेस्ट द ओरिजिनल नाम से--